दुकान भी दिख रहा है। उसमे शटर लगा हुआ है ताला भी लगा हुआ है। यहाँ भी एक पुस्तक का दुकान है। यहाँ भी लगता है बच्चे सब आते होंगे किताब लेने के लिए।

और देखते हैं एक वृक्ष कितना बढ़िया उसमें उसके बगल मे दो चार पाँच छे गो आदमी है वहाँ पे।